ये एक बड़ी सी दुकान है इसमें बहोत सारी बुके और पेन कॉपी मिल रही--

दूसरे साइड में एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

यहां पर दूसरे साइड में बड़ा सा मेज पड़ा है जो रेड कलर का है।

दूसरे साइड में बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं।

ये एक बड़ी सी दुकान है इसमें बहोत सारे डमरू रखे हुए हैं दूसरे साइड में तलवारे रखी हुई है।

पर दूसरे साइड में एक डब्बा रखा है।

यहां पर बहुत सारे हैं यहां पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं।

दूसरे साइड में भी हल्की हल्की घास लगी हुई है जो ग्रीन कलर की है।

दूसरे साइड में बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक आदमी दूसरे साइड में खड़ा हुआ है जो ब्लू कलर का पेहने हैं।

ये एक पेट्रोल टंकी है इसमें बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारी जमीन में ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

ये एक ऑफिस है। इसमें बहोत सारी चेयर पड़ी हुई हैं। बहोत सारी मेजें पड़ी हुई हैं।

ये येलो और रेड कलर का पेंट हुआ है।

झूले लगे हुए हैं दूसरे साइड में बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

पानी में एक स्लीपिंग वाला झूला है जिस पर बच्चे झूलते हैं।

यहाँ पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं जो बकत कलर के हैं।

ये एक सैलून है। इसमें बहोत सारी सामान रखी हुई हैं।

दूसरे साइड में बहोत सारी ब्लैक कलर की चेयर पड़ी हुई है।

यह एक बड़ी सी दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा खिड़की रखी हुई है जिसमें सामान रखी हुई है।

यहां पर जमीन में बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं और इसके सामने रोड है।

दूसरे साइड में एक औरत खड़ी हुई है जो फुटबॉल लिए हैं।

यहां पर बहोत सारी मछलियां काटी जा रही है यहां--

दूसरे साइड में एक ड्रम रखा हुआ है जिसमें बहुत सारा बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

दूसरे साइड में एक कारबेट रखा है।

अंदर बहुत सारे कुचरे और सामान मिल रही हैं।

ये एक बेडरूम है। इसमें एक बेड पड़ी हुई है जिस पर व्हाइट कलर की चद्दर बिछी हुई है।

दूसरे साइड में बहोत सारी औरतें खड़ी हुई हैं।

इसके पीछे बहोत सारी सामान पड़ी हुई है।